अलमारी दिख रही। बुकें रखी हुई दिख रहीं।

एक गमला रखा है। गमले में फूल खिल --

अलमारी दिख रही है। अलमा ब्लैक कलर की सीट लगी हुई है।

रेड ग्रीन येलो कलर का बना हैं। नंबर दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कुछ चादर वगेरा रख हुआ है।

से बाजू में जेनट्स खड़े हुए हैं।

कुछ भालू हैं। भालू के संग कुछ --

गार्डन वगेरा उ गार्डन वगैरा उ दिखाई दे रहा है।

नीचे कुर्ते रखे हैं। पिंक ऐलो ग्रीन व्हाइट सभी कलर के कपड़े वगेरा रखे हुए हैं।

दो लोग जा दिखाई दे रहे हैं। सीढियां लगी हुई ऐं ।

जेन्स खड़ा हुआ है। ब्‍लू कलर की टी-शर्ट पहन रहा है। इंग्लिस में कुछ लिखा दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहे हैं। एक येलो कलर ब्‍लू कलर की लाईट दिखाई दे रही सफेद कलर का कुछ है।